ये मेरे पिज़्ज़ा शॉप की है शॉप के अंदर काउंटर पे एक पिज़्ज़ा का बुक्स रखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ स्ट्रॉ वगेरा भी रखी स्ट्रॉ रखी हुई नजर आ रही है।